ये चित्र किसी नदी के ऊपर बड़े बहुत पूल का है क्योंकी पूल के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है अपनी सायकल लिए और सामने असमान में सेद रंग के बहुत बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे हैं ।

बच्चे को नहलाए और एक लड़का सामने खड़ा है।